जाली है और यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए है सफेद कलर से सफेद कलर से और ब्राउन कलर से पेंट किया गया है कार्यालय में और खूब सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जीने भी लगे हुए हैं।

है और काफी सही लग रहा है ये जगह कलर से पैंट किया हुआ है ग्रीन कलर से पैंट किया हुआ है और यहा पे पेड़ पोंधे भी बोहोत लग रहे है। स्कूटी बाइक वागेरा भी खड़ी है एण्ड जाल भी लगा--